तस्वीर में एक गिरजाघर दिखाया गया है जिन।

चर्च के बाहर एक लाल रंग की कालीन बिछी हुई है।

टांगे भी खड़े हैं और इर्द-गिर्द हरे-भरे दरख़्त भी लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक ताली में एक धारा दिखाया गया है जिस के कॉरिडोर में एक बोर्ड ली लगा हुआ है जिस --